उसके छत पर टिन लगी हुई है और छोटा सा केबिन बनाया गया है। निचले हिस्से में बोहोत बड़ी सी केबिन है।

काफी सारे अलग-अलग बड़ी-बड़ी वेयरहाउस को देख सकते हैं।

साइड में रेलिंग दिखाई दे रही है। वेयरहाउस भी दिखाई दे रहा है।

उसके मुँह पे एक रस्सी बंधी हुई है व रस्सी नीचे एक --

सफ़ेद और लाल है अंदर हमे एंट्रेंस पे काफी सारी --

इन्होने सफ़ेद रंग के कपडे पहने हुए हैं और उनके मेट का रंग बैगनी --

यहाँ आलमारी में हमें छोटे छोटे फ्लावर वाश दिखाई दे रहे हैं।

अलग-अलग प्रकार की किताबे रखी हुईं है और कौपियाँ भी हैं।

फलों को लद पद देख सकते हैं।

क्यूंकि काफी सूंदर है और लकड़ी के ऊपर काफी अच्छे से पेंट और पोलिश किया गया है।

एक सेम कंपनी की दो अलग-अलग रंग की बाइकों को खड़ा देख सकते हैं।

एक बाइक सफ़ेद रंग की है और एक ब्लैक रंग की है।

सामने हमें एक पुरानी ईमारत का दरवाजा --

और सब बच्चे कुछ न कुछ आर्टिनग क्राफ्ट का सामान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और हमें एक और लड़का आते हुए दिखाई दे रहा है जो कि साइकिल से आ रहा है।